इस इमेज में दो लड़के दिखाई दे रहे हैं एक लड़का बैठा हुआ है ये लड़का कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है।

इस इमेज में एक जगह नजर आ रही है यहां पर एक पौधा लगा हुआ दिखाई दे रहा है इस इमेज में एक पेड़ दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर ये तीनों बंदे एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले हुए खड़े हुए हैं।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

इस इमेज में एक जगह दिखाई दे रही है यहां पर एक मूर्ति नज़र आ रही है।